और रेड कलर की ग्रिलें रखी हुई है अंदर बहुत ही सुंदर घर बनाया हुआ है रेड कलर की छत है इसमें।

एक लड़का बाइक चला रहा है ध्यान इसका कहीं और है।

ये क्या है ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा इतनी बड़ी इंटेलीजेंट तो मैं हूं नहीं बट मैं फिर भी बता देती हूं।

सिक्योरिटी गार्ड से चॉकलेट मांग रही है और सिक्योरिटी गार्ड बोहोत ही केयरफुली प्यार से दे रहा है।

ये एक रेस्टोरेंट लग रहा है बहोत ही सुंदर रेस्टोरेंट है।

और भी कई चीज है और एक पिक्चर है दीवार में--